जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक दुकान नजर आ रही है दुकान के अंदर बहुत सारी कॉफ़िया रखी हुई नज़र आ रही है और पा --

और बाहर दो बोर्ड भी लगे हुए नजर आ रहे हैं बाहर एक गहरे कलर का कारपेट भी बिछा हुआ नजर आ रहा है और--

और बिजली का बोर्ड भी नजर आ रहा है और ऊपर रखी हुई बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी नजर आ रही है उनमें कुछ कोल्ड ड्रिंक हैं फैंटा की।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं एक ईंटों का कच्चा मकान नजर आ रहा है और उस पर लगे हुए लोहे का गेट भी नजर आ रहा है और उसके ऊपर लगी हुई डोरिया भी नजर आ रही है उस--

और सामने बहुत सारे लोग भी खड़े हुए नज़र आ रहे है एक सफ़ेद क शर्ट पहने हुए आदमी सर पे टोपी रखे हुए नज़र आ रहा है और उसके अंदर से पौधे भी लटकते हुए नज़र आ रहे है ।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक ऑफिस नजर आ रहा है और एक उसके अंदर बहुत सारे पीले और लाल बलून लटके हुए नजर--

और दो काउंटर भी नजर आ रहे हो और उनपे रखे हुए लैपटॉप भी नजर आ रहे--

और बहुत सारे फूल भी लगे हुए नजर आ रहे हैं और सामने दो खिड़कियां भी नजर आ रही हैं और सामने लगा हुआ लैम्प भी नजर आ रहा है।

और तराज़ू रखा हुआ नजर आ रहा है एक लाल कलर की डलियां रखी हुई नजर आ रही है और लहसन भी रखा हुआ नजर आ रहा है ।

और तंबू भी लगे हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारी लाइटें भी जलती हुई नज़र आ रही है एक डलियां में लाल कलर के टमाटर--

और एक खोखा भी रखा हुआ नजर आ रहा है फर्श पे परती हुई परछाई भी नजर आ रही है और--

एक कुर्सी भी रखी हुई नजर आ रही है दिन का वक़्त मालूम होता है एक बिल्डिंग पर सफेद कलर की टंकी भी रखी हुई नजर आ रही है और --

और घर के नीचे बना हुआ एक मंडप भी नजर आ रहा है मंडप के अंदर एक मूर्ति भी रखी हुई नजर आ रही है बाहर बे --

और एक ऑटो भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है और एक बड़ा सा डस्टबिन का डब्बा भी रखा नजर आ रहा है पीछे एक घर में सिन्टेक्स की टंकी भी रखी हुई नज़र आ रही है --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

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक मेला नजर आ रहा है मेले के अंदर बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बड़े भी नजर आ रहे हैं ओ --

और एक बस भी खड़ी हुई नज़र आ रही है और एक सफ़ेद कलर की कार भी नज़र आ रही है एक आदमी पन्नी ओढ़े जाता हुआ नज़र आ रहा है और एक बिजली का खंभा भी नज़र आ रहा है ।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक मॉल नजर आ रहा है और मॉल के अंदर बहुत सारे कपड़े भी टंगे हुए आ रहे हैं और बहुत--

जैसे की मैं देख पा रहा हूँ सामने एक टिरक खड़ा हुआ नजर आ रहा हैं ट्रैक अंदर नीचे तीन लड़के खड़े हुए नजर आ रहें और--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

ट्रक के बहुत बड़े टायर भी नज़र आ रहा है ट्रक पे लिखा हुआ जे_ऐम_टी भी नज़र आ रहा है ट्रक --

ठीक है मैं देख पा रही हूं कि खेल का बड़ा सा मैदान नजर आ रहा है और मैदान के अंदर खेलते हुए खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं और क्रिकेट का स्टंप भी नजर आ रहा है --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है पेट्रोल पंप के सामने खड़ी हुई एक बड़ी सी गाड़ी ख नज़र आ रही है और उसमे रखा हुआ एक डस्टबिन भी नजर आ रहा है।